भी दिख रहा है। साइड में एक मकान भी दिखाई दे रहा और से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा। गमले भी दिख रहे --

ऐ कोई दिखाई दे रही है। ऊपर बादल भी दिख रहा सफेद कलर का हो रहा है।

दिखाई दे रहा है। पंछी उन दिख रहे हैं। खंभे भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर बादल भी दिख रहा है ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का ।

यहाँ भी दिख रही है। ऊपर बहुत सारे बलब जलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें लाल-लाल दिखाई दे रहा है और उउ ऊपर बादल भी दिख रहा है। बादल मल्टी कलर का हो रहा।

केबिन उन भी दिखाई दे रहे। भी दिख रही है। लाइट वाले खंभे भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे पत्थर दिखाई दे रहे। चद्दर वाले खंबे भी दिखाई दे रहे हैं। उ-

ये रेलिंग लगी हुई है। उसमें नीले कलर का पेंट हो रहा। खजूर जैसे पेड़ भी दिखाई रहे। --

ऊपर बहुत सारे जेंसन भी खड़े हुए हैं लाइन लगाके । ऊपर चद्दर भी चढ़ी हुई है। बाइकउन भी खड़ी हुई हैं। --

एक बहुत लंबा स्कूल दिखाई दे रहा है। स्कूल में पीले कलर का पेंट हो रहा है। लाल रंग से स्कूल का नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे --

में नीले कलर का व्यू हो रहा है। ये खिड़कियां दिखाई दे रही। कुछ शटर खुली हुई भी दिख रही। कुछ चद्दर भी --

एक मकान दिखाई दे रहा। मकान में पीले कलर का भी पेंट हो रहा। गोल्डेन कलर का भी हो रहा। दो-तीन मंजिल बना --